दे रही है एक स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है।

सबके मुंह में ब्लर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है। कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं।

बर्दी दिखाई दे रही है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जहां पर बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है कुछ गाड़ियां इधर-उधर चल रही है।

कुछ ग्रिल्स लगी हुई है और कुछ गेट लगे हुए है।

कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई दे रही है जो मिट्टी को इधर-उधर ले रही है।

दो तीन टंकियां दिखाई दे रही है एक ग्रिल दिखाई दे रही है।

यहां कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारे बैनर्स लगे हुए हैं एक---

लाइट्स का खंभा लगा हुआ है एक लाल कलर का डाक पत्र देने के लिए दिखाई दे रहा है।

डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं जो बच्चों का चेकअप करा रहे हैं और--

साथ में कुछ बाइक्स दिखाई दे रहे हैं।

टोपियां लगाई हुई है और सबके चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही है एक ऊपर जाने के लिए---

यहां पर कुछ नाव दिखाई दे रही है और बहुत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है आगे तक--

और पीछे कुछ जंगल सा दिखाई दे रहा है।

नीचे का अलग रखा हुआ है।

बहुत सारी ग्रिल्स लगी हुई है और---

जहां पर एक टेबल दिखाई दे रहा है और कुछ--

जहां पर बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है यहां पर--

यहां पर कुछ चेयर्स और एक--

बिजलियों की तारें दिखाई दे रही है।

बहुत सारे गमले रखे हुए हैं जिन पर--

फूल लगे हुए हैं और कुछ--

आदमी चल रहे हैं और आगे--

पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं बड़बड़ करने--